अं ऐसे छे सात प्रकार का सब्जी का है।

यहां पे बहुत बड़ा में हैं बाहर में बहुत बड़ा हॉल आंगन है।

पीले काले लाल कलर के बैलूंस र से सजाया हुआ है गुड्डे रखे हुए पुतले टाइप ।

और दो दो स्कार दिख रहे हैं और अच्छा सा फर्ची है ब्लैक और सफेद कलर की कार है।

के रास्ता हैं रास्ते में आने जाने वालें की बाइक हैं और बहोत सारे लोग हैं और ये ऑटो हैं और पोस्टर लगा हुआ हैं बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।